टेबल के ऊपर प्लेट और बाउल भी रखा हुआ है।

जहां पर बहोत सारा मूर्ति रखा हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक ब्रिज दिखाई दे रही है।

घर में बहोत सारा खिड़कियां और दरवाजे भी बनाया हुआ है।

यहां में दो मिस्त्री काम कर रहे हैं।

छत पर बहोत सारा टीना लगाया हुआ है।

पीछे में पहाड़ और आसमान भी दिख रहे हैं।

ब्रिज को सीमेंट से बनाया हुआ है।

घर में टीना भी लगाया हुआ है।

नीला रंग पर्दा भी लगाया हुआ --